एक्टिवा रखी हुई दिखाई दे रही है। बाइक भी दिखाई दे रही है। छोटासा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। एक पेड़ भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है।

और सामने भी हमें आसमान दिखाई दे रहा है।

और एक खिड़की भी हमें दिखाई दे रही है। साइड में दीवार दिखाई दे रही है। यहाँ पर ग्रीन कलर से पेंट और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं काम करते हुए।

वाइट कलर की हमें एक बडी-सी दिवार दिखाई दे रही है और गेट भी दिखाई दे रहा है। एक कुर्सी रखी हुवी दिखाई दे रही है। नीचे कारपेट बिछाया हुवा दिखाई दे रहा है।

नीचे एटीएम भी हमे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बोर्ड लगे हुऐ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हमें एक ख खंडहर दिखाई दे रहा है पत्थर का बना हुआ और यहाँ पर हमें अब हरी-हरी घास भी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर हमें एक सड़क दिखाई दे रही है जहाँ पर हरी-हरी घास दिखाई दे रही हैं।

सामने हमें गाय भी दिखाई दे रही है। गाय का एक बछड़ा भी दिखाई दे रहा है। एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है चद्दर की छत भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें एक शॉप दिखाई दे रही है। जहाँ पर बहोत सारी मछलियाँ रखी हुवी दिखाई दे रही है। एक तराजू भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है। एक महिला बैठी हुवी दिखाई दे रही है।